इमेज में एक बंदा खड़ा हुआ है उस बन्दे ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है और यहाँ पर दो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारा पानी है और यहाँ किनारे पर किश्ती भी खड़ी हुई हैं।

एक झंडे का रंग मेहरून है और दूसरा झंडा फिरोजी रंग का है और यहां पर एक बाइक खड़ी हुई है जो कि काले रंग की है और विद्यालय के अंदर दो बंदे हैं।

इमेज में एक स्टोर है इस स्टोर की जो दीवारे है वेह गुलाबी रंग की है इस में स्टोर बहुत ही सारा सामान रखा हुआ ये सामान बहुत ही सजा कर रखा गया।

जिसमें हिन्दी के अक्षरों मे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर दुकान के छत पर लोहे की टीन है।

इस इमेज मे बहुत से लोग है कुछ लोग बैठे हुए है और यहां पर बहुत सी मिट्टी भी है।